यह किसी गार्डन के बाहर का दृश्य दिखाई दे रहा है। जहां--

और आजू बाजू में आईने लगे हुए हैं।

लोग योगा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।